दिख रहा है और एक लेडीज है बैठी है और बैग भी है और खिड़कियां भी है।

लगाया गया है साइड पर रूम के कलर भी बहुत अच्छा है फैन चालू है।

बहोत सारा टेबुल के ऊपर वाइट की कपड़ा बिछाया गया है और गिफ्टस् सब रखा गया है फूल मालायें रखाया गया है।

यह पीछे बैठे हुए हैं और दोनों खड़े हैं और उनकी कलर भी बहुत अच्छी है और खिड़कियां भी हैं।

बड़ा बड़ा पेड़ है ग्रीन कलर के है साइड पे भी बड़ा जंगल है।

इस पिक्चर में देखने को मिलता है कि--

ग्रीन कलर का कारपेट लगाया गया है साइड पे एक घर दिख रहा है जहां पे लीचू लगाया गया है।

इस पिक्चर में देखने को मिलता है कि रूम है रूम में आइडिया के के कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है साइड पे--

और बहुत सारा बैलून सजाया हुआ है रेड और येलो कलर का।

लाइटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है।

इस पिक्चर में देखने को मिलता है कि एक आदमी है ब्लू कलर के चेयर में बैठा हुआ है कंपूटर में कुछ देख रहा है काम कर रहा है।

कलर की ब्लू येल्लो रेड कलर की सर्कल रखा गया है ट्रैक पर चल कर--

इस पिक्चर में दिखने को मिलता है कि एक बस स्टैंड है बस स्टैंड के बाह बाहर एक बस खड़ा है।

पेड़ पौधे और बड़ा बड़ा पत्थर और कुछ लड़कियां बैठे हैं कुछ चल--

इस पिक्चर में दिखने को मिलता है लंबा सा रोड है चलने के लिए कुछ कचरा भी पड़ा है बहुत सारा और आगे आदमी चल के जा रहा हैं साइड पे--

इस पिक्चर मे दिखने को मिलता हैं कि बहोत सारा टेबल प्लास्टिक का--

बड़ासा नदी हैं नदी के किनारा बहोत सारा बोट सब लगा हुवा हैं।

और बहुत सारा पोस्टर भी दीवार पर लगाया गया है और वो भी कलर ब्लैक कलर की लगाया गया है नीचे की फ्लोर भी बहुत ही कलीन --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

एक मंडप हैं मंडप के एंट्री गेट पर बहोत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लॉवर जैसे कि रेड पिंक यलो पर्पल कलर ग्रीन कलर के फ्लॉवर से सजाया ग गया हैं।

और हार्ट सिंबल में कुछ डिजाइन बनाया गया है एक आदमी जा रहा है तो उधर देख रहा है।

इस पिक्चर में देखने को मिलता है कि जीसू क्रिश्चियन --